मैकेनिकल इलेक्ट्रिक वर्क इस के बोर्ड पर लिखा हुआ है इसके गेट खुले हुए हैं।

ये किसी पुरानी इमारत की तस्वीर है ये बहुत पुरानी मोहल्लो की --

रिफ्लेक्शन दिख रहा है नीचे ब्लू और पिंक कलर के का मेट बिछा हुआ है और बहुत सारे --

यहाँ पर फूलो की माला टंगी हुई है यहाँ पर दो तीन तरह की फूलो की माला टंगी हुई है।

ये एक सफ़ेद फूलो की माला है और दूसरी गेंदों की फूल की माला है यहाँ पर दुकान पे टंगी हुई है बहुत सारी ।

और बाकि तीन ने जीन्स टॉप पहने हुए है नीचे फर्श काला है।

ये एक तलाब की फोटो है इस तालाब में कमल के पत --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

ये कॉस्टयूम में है ये एक माला भी डाली हुई है और ये डांस --

दिखाई दे रहे है दूर कही गिट्टी भी पड़ी दिखाई दे रही है एक कन्स्ट्रक्टर भी है।

कुछ सेल्फ में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है जो अच्छी तरीको से जमी हुई है।

और कांटेदार पेड़ दिखाई दे रहे है।

और साइड में एक खिड़की भी है ।